इ एक ब्रिज छै और एक ब्रिज छै और एता बिजली के खंभा छै और बहुत सारा तार छै और एक गाड़ी भी छै और पेड़ सब छै बहुत बढ़िया लागे छ --

इ हो कोनो स्कूले टाइप के लागे छै और ओकर बाद केहू छै अ ते दुगो कुर्सी लागल छै बोर्ड लागल छै।

यह एक स्कूल छे और बहुत स्कूल में बहुत सारा फोटो लागल छेनेता सब के और भारत माता के तस फोटो भी लागल छे।

और ऊपर में क्रिस्चियन वाला सिंबयल बनल छै और बहुत डिज़ाइनदार डिज़ाइन छै एक कुछ अलग टाइप के बहुत अच्छा लागे छै देखे मे बहुत खूबसूरत डिजाइन---